यहां पर एक कार है कार को स्टैंड आए हुए हैं यहां पे बहोत सारी इलेक्ट्रिक कि चीजे नजर आ रही है स्विच नज़र आ रहा--

है यहां डिजाइन नज़र आ रहा है यहां पे बहुत सारे लड़के के जैसे नजर आ रहे हैं वायर नजर आ रहे हैं।

ऑरेंज कलर की बस है और इसकी स्लाइड यहां पे दिखाई दे रही है यहां पे।

प्लेट नजर आ रही है ट्रे नजर आ रही है छोटी प्लेट्स नजर आ रही है।

यहां पर से दो आदमी आपस में कुछ बात क चीत कर रहे हैं ऊपर लाइट नजर आ र--

यहां पर एक बड़ा सा तालाब है तालाब के अंदर कई सारे बोट नजर आ--

अंदर एक एंट्री है एक कार स्टॉपेज है और यहां पे बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंगे के नजर आ रही हैं वायर नजर आ रही है।

पीछे जो खेत नजर आ रहा है। आदमी नजर आ रहे हैं। औरतें बैठी हुई है मो नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक मॉल है मॉल यहां पे टॉर्च रखी हुई है यहां पर प्रेशर की हुई।--

यहां अंधेरी रात नजर आ रही है एक बहुत सारे लोग बैठे हुए फिर आपस में बात कर रहे--

यहां पे बिल्डिंगे नजर आ रही है यहां पुरा--